और यह हमे फूलो की एक दुकान दिख रही है कोई फ्लॉवर शॉप है ये और इसमें अलमारिया बनी हुई है जो पीले कलर की है लकड़ी की अलमारिया बनी है।

हमे सामने एक बस अड्डा दिख रहा है। बस अड्डे में हमे बहोत सी बसे खड़ी हुई दिख रही हैं और एक कार खड़ी हुई दिख रही है और यहाँ पर एक बिल्डिंग की छत्त दिख रही है। जिसपे काले रंग की एक टंकी रखी हुई है। नीचे एक गाड़ी खड़ी है उसपे लाल रंग का --

यहाँ हमें एक मैदान दिख रहा है मैदान में हमें एक सफ़ेद रंग की इमारत दिख रही है और उसको उसके ऊपर चर्च उसकी ऊपर क्रॉस बना हुआ है।

वह बाहर से सुरमई रंग का है अंदर से उसमे लाल रंग किया हुआ है और यहाँ पे कुछ बड़े-बड़े पेड़ पौधे दिख रहै हैआगे कुछ मकान दिख रहै हैं आसमान दिख रहा है।

नदी में फुल उगाये गए है। और इस इसमें आसमानी और रंगोली रंग किया गया --

और बहुत सारे पेड़ पौधे लग रहे हैं जिसमें पीले रंग के फूल खिले हुए हैं।

व लाइटों के टॉवर दिख रहे है और कुछ बिल्डिंग्स दिख रही है जो पीली और नारंगी रंग की है।

और काउंटर पर लाल रंग का प्लास्टिक बिछा है और एक काउंटर पर बहुत सी मछलियां रखी हुई है एक व्यक्ति उनको साफ कर रहा है।

और ये धार्मिक स्थल लग रहा है इसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है यहाँ पर खिड़की और दरवाजे बने हुए है।

सफेद रंग की शटर और दरवाजे का रंग एक कार खड़ी हुई है यहाँ पेड़ लग रहे है आसमान दिख रहा है।

उसके पीछे कुछ डिजाइंस से गुलाबी रंग के-पर्दे लगे हुए हैं और यहां फूलों से सज्जा की गई है जिस पर हे मां --